और नाव पर एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए दिख रहे है।

एक आदमी वाइट कलर का डॉक्टरों का टॉप लगाये हुए है।

अच्छी लग रही हैं सभी लड़कियाँ।

हमें यहाँ पर बहुत सारे लेडीजे आदमी महिला बे लड़का लड़की छोटे बड़े सभी प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।

और ये जैसे देखने में बहोत अच्छा लग रहा है।

यहां पर हमें एक जीप खड़ी हुई दिखाई दे रही है।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

कुछ और लड़के भी स्विमिंग पुल में नहाने के लिए जाते हुए हमे दिखाई दे रहे है।

हमें यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।